यहां पे बोहोत सारे लोग --

इस तस्वीर पे वाइट कलर का पेंट चढ़ाया हुआ है और नीचे की साइड में पथ्थल है। पथ्थल पर एक रखा हुआ है। बोहत प्रकार के औजार रखे हुए हैं। इसी के बगल में बोहत प्रकार के मूर्ति बन रहे हैं।

यह एक मछली मार्केट है।

यंहा पे एक वाटर बोतल है उसका रंग --.

यंहा पे इम्पाइर भी है और पीछे के साइड में बैठने वाला है। वो वाइट कलर का रंग से है। उसके ऊपर एक वाटर टैंक है और यंहा पे घास हरे-भरे हैं।

यह एक साड़ी का दुकान है।

इसमें बहुत प्रकार के साड़ियाँ हैं ।